इसमें बहुत सारे लैपटॉप हैं।

इसमें बहुत सारे गमले हैं गमले में फूल है।

उसके आसपास लोहे का दरवाजा भी है।

यहां पे कुछ आदमी भी है और रस्सी ताना हुआ है।

इसमें एक दरवाजा लगा हुआ है लकड़ी का।

यह एक मंडी है मंडी में बास लगा हुआ है।

इसमें बहोत सारे कुर्सी भी है पंखा भी है दो तरह का पंखा है।

यहां पे बहोत सारे दुकान है दुकान के पास आदमी है।

जैसे सेव अनार संतरा अंगूर केला--